ये एक डेंटिस्ट का क्लीनिक है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है।

ये एक बैग की दुकान है।

और अच्छी लग रही है सुंदर दिख रही है।

भगवान जी की फोटोस भी लगी हुई हैं सामने।

यहां पे काम लगा हुआ है और--

में रखी हुई हैं बहोत ज्यादा सामान है यहां पे ऊपर लाइट जगी हुई हैं।

और बहुत सारे लोग यहां पे इकट्ठे है नीचे टाट बिछायां हुआ है एक छोटा बच्चा भी खड़ा है रात का समय हैं।